यहां पे एक लड़का है और व्हाइट कलर का ईयर फोन लगाया हुआ है और वो--

और यहाँ पे एक पाया पे संस्कीय संताक महाविद्यालय जगतपुर लिखा हुआ है।

लड्डू का कलर येलो है और वहाँ पे एक मूंगबत्ती भी जल रहा है और कई सारे --

अगरबत्ती भी जल रहे हैं और यहां पे अगरबत्ती का कलर ब्लैक है और मोमबत्ती येलो टाइप का जल रहा है जो की--

यहां पे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है और यहां पे एक स्कूटी भी खड़ी है।

और यहाँ पे एक स्कॉर्पियो खरी है और वहाँ से एक झरना --

और पैकेट में फोन रखा हुआ है और फोन का कलर ब्लैक है और बहुत से सारे पेंट खोसे हुआ है।

और वहाँ पे ए बहुत सारे आदमी खरे हैं और एक लड़का एक लड़का ब्लकर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

और वो सामने एक ठेला खड़ी है और ठेले पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है --

और इसमें सीढ़ी भी बनाया गया हैं और बगल में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं और पेड़ पौधे का कलर --

चार आदमी खरे हैं और ये कप रेड कलर के टी-शर्ट पहने हुए हैं।

यहां पे एक बहुत से सारे बच्चे खेल रहे हैं और यहां पे वाइट कलर की लाइट लगाई गई हैं।

यहां पे एक एल_ई_डी अ कम्प्यूटर का लाइ लाइट्स ब्लिंक कर रहा है और यहां पे बहोत से सारे--

भी जल रहे हैं जो कि रेड कलर के हैं और वो भी बोर्ड में जल रहे हैं।

और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आदमी चेयर पे बैठा हुआ है और वो सेल्फी ले रहा है।

जिसका कलर लोहे का कलर है और यहाँ पे चार पांच आदमी खरे हैं और ये --

यहां पे एक एम्बुलेंस खड़ी है और एंबुलेंस के पीछे एक मकान हैं और मकान के आगे दो बाइक खरी है।

और बाइक के आगे तीन बच्चा खेल रहा है और यहां पे एक इलवेस्टर का भी घर है।

और यहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ है जो कुत्ते का कलर पिंक टाइप का है।

यहाँ पे एक पानी का फोटो है।

यहाँ पे एक मकान का फोटो है और नीचे फर्श बना हुआ है।

और फर्स में एक पिलर भी बना हुआ है जो कि पिलर का कलर वाइट है और मकान में --

पिंक है और यहां पे अह बहुत सारी मकानें भी है और मकान का कलर व्हाइट है।

और यहाँ पे मकान का कलर वाइट है और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा --

उसमें छेद छेद लम्बे लम्बे छेद बनाये गये है और वो छेद का कलर ब्लैक है।

और नीला है और यहाँ पे एक पूल बनाया गया है जो कि पानी --

का उस साइड रोकता है और यहाँ पे बहुत से सारे पोल भी खड़े हैं।

यहाँ पे एक पूजा हो रहा है और पूजे कर रहे आदमी कुछ ड्रेस पहने हुए हैं औ --

और माइक का कलर ब्लैक है और यहां पे पीछे बहोत सा सारे फोटो लगाए गए हैं और फोटो में--

यहाँ पे एक बैनर बना हुआ है और बैनर का कलर वाइट है और यहाँ पे बैनर में एक कंप्यूटर का --

और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे एक लेडीज खड़ी है जो साड़ी पहनी हुई है --

और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ आदमी भी खड़ा है और ये आदमी लेडीज के साथ खड़ा है।

यहां पे एक दुकान का फोटो है और दुकान पे बहोत ही सारे--

खाने की चीजें टंगी हुई है और यहाँ पे तार भी टंगा हुआ है और यहाँ पे स्टेंट फैन का पंखी भी टंगा हुआ है औ --

और यहां पे एक डब्बा भी टंगा हुआ है और यहां पे पास्ता कुरकुरे उम्म कबाब और--

छोटे-छोटे बच्चों की खाने वाली चीजें भी टंगी हुई है और कुरकुरे भी है और कुरकुरे --

यहाँ पे एक भारतीय ग्राहक सेवा केंद्र है और लोकसभा केंद्र भी लिखा हुआ है और वहाँ पर बैनर लगा हुआ है और --

यहाँ पे एक आदमी नृत्य कर रहा है और वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है --

और वह ब्लैक कलर का जूता भी पहना हुआ है और एक आदमी बैग टांगे हुए--

ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और वो इधर ही देख रहा है और उस लाइन के बगल वाले --

यहां पे बहोत से सारे अ बाइक लगे हुई हैं और ये बाइक का कलर वाय ब्लैक है और यहां पे एक टोपी पेहने हुए--